यह पत्ता बहुत ही सुन्दर बा अगल बगल में हरा भरा पत्ता-प दिखाइ--

दोगो तकिया बा दो कुर्शी बा बेड शीट बा।